जिस पे रेड कलर से टू टू लेट फॉर सेल लिखा हुआ दिख रहा है।

इस इमेज में हमें एक बड़ा सा ऑफिस दिख रहा है ऑफिस में--

एक स्टील की बॉटल रखी हुई दिख रही है एक ब्लैक कलर की बॉटल रखी हुई दिख रही है।

इस इमेज में हमें एक बेकरी दिख रही है बेकरी में बेकरी जो है बैलूनों से डेकोरेट है येलो ऑरेंज

इस इमेज में हमें एक रूम दिख रहा है रूम रूम में जो है स्लाइड्स दिख रहीं हैं पुल गेम रखें हुए दिख रहें हैं दो--

इस इमेज में हमें एक बड़ा सा डॉक्टर मोनिका जैन का क्लीनिक दिख रहा है बाहर जो है कुछ गमले रखे हुए दिख रहे हैं।

जिसने रेड कलर का पैजामा और स्काई ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

इस इमेज में हमें एक किराने की शॉप दिख रही है जहां बहुत सारे चिप्स के पैकेट टंगे हुए दिख रहे हैं पानी की बोटले रखी हुई दिख रही हैं।